साइड में चटनी भी रखी हुई है।

काफी टेस्टी लग रही है।

एक होटल दिखाया गया है.

अंदर कुछ रेड कलर का सामान दिख रहा है।

एक जगह दिख रही है।

एक दरवाजा दिख रहा है।

एक और दिख रहे है।

नुकीली चीजें रखी हुई है।

जो गोल गोल है।

यहां पर कुछ लोग बैठे हैं।